और एक खेती दिख रही है इस खेती में एक है।

यहां पे एक बैंक है बैंक का नेम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया।

एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है यहां पे बहोत सारी एल_इ_डी लगी हुई है।